यहाँ पर ब्रांचे लगी हुई दिखाई दे रही है अलग अलग बेंचो पर अलग अलग लड़के बैठी हुई दिखात वे रहे उनके ब्रेच्छों पे पे ड्राइंग पेपर रखे हुए दिखाई दे रहे है।

यहा पर चेअर पे कुच लड़के ड्रौइंग बताने हुए दिखाई दे रहे है हर लड़का अलग अलग ड्रौइंग बनाते हुए दिखाई दे रहा है बँचो पे फेवीक्विक है और टेप डले हुए दिखाई दे रहे है और पिछे खिड़कीया लगी दिखाई दे रही है।

गाड़ी दिखाई दे रही जिसमे जिसमे एक आदमी डरे मशिने और छेद करते हुए दिखाई दे रहा है उसके सामने एक बोर्ड रखा हुआ है अ दिखाई दे रहा है और कुच्छ पिच्छे सामान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा--

यहाँ पर ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे बैठी हुई दिखाई दे रहे है पीछे स्कूल दिखाई दे रहा कुछ टीचर भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहुत सारी चेअर डाली हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ लड़के खडी हुई दिखाई दे रहे है।

यहा पर कुछ लोग दिखाई दे रहा है यहा पर एक कम्पुटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहा पर एक आदमी फोटो खेचता हुआ दिखाई दे रहा है यहा पर बोर्ड लगी हुई दिखाई दे रही है बिजली की तार लगी हुई पिच्छे दिखाई दे रही है।

यहा पर एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पर एक टंकी बनी हुई दिखाई दे रही है यहा पर एक ऑटो चलते हुए दिखाई दे रहा आजूबाजू पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे कुछ खंबे लगे हुए भी दिखाई दे रहे है।

एक ड डॉक्टर कुछ लिखती हुई दिखाई दे रही है सामने पेपर डली हुई दिखाई दे रहा है सामने एक पेशंट खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।